दो पंखा ऊपर दिखाई दे रहा है और मंडप जो बना हुआ है वो लाल हरा और पीले रंग का कपड़ा से--

प्लास्टर नई हुई हैं ऊपर सूरज दिख रहा हैं और सामने से बहुत सारे तार इलेक्ट्रिक के जा रहे हैं।

मैरिज स्टेज है और इसपे दूल्हा दुल्हन खड़े है आगे से लाइट बनी हुई है यह खूबसूरत स्टेज बनाया गया है।

यह एक शिवलिंग है और शिवलिंग के अंदर शंकर भगवान की अा मूर्ति बनी हुई है ।

और दूसरा हाथ जो हैं आशीर्वाद के लिए इशारा हैं और बहोत सारे आभूषण पहने हुए हैं मुकुट भी इनका गोल्डन हैं।

बुलेट का शोरूम है इसमें तीन बुलेटे दिख रहीं हैं जो रेड कलर की है और इसका जो दिवार है दिवार में दो पार्ट दिख रहा है एक शीशे का लगा हुआ है।

कुछ लोग बैठे हुए है चेयर पे और एक चेयर खाली दिख रहा है और ऊपर से इसे वाइट कलर से बनाया गया है सामने शीशा का कवर किया गया है..

यह एक ब्रांडेड कंपनी का स्कूटी का शोरूम है जिसमे सामने तीन स्कूटी दिख रही है जो आसमानी काला और रेड है ।

--और इसमें बहुत सारे पुस्तक भरे पड़े हुए है।